जैसे लक्कड़ का सामान और फिटिंग चल रही हो।

यह फोटो एक कॉलेज की लग रही है और खुला ग्राउंड है एक कार खड़ी है इसमें--

एक फोटो बाहर गा ग्राउंड है।

और बहोत सारे चेयर और पाइप्स है।

कल्वरी जैसे उसमें मतलब ब्लू कलर का वो है और बहुत सारे सीढ़ियां दी गई--

फोटो मे बहुत सारी लेडिज टेंट के अंदर--

मछलियां मरी हुई हैं और दाने बिखरे हुए हैं।

पानी बहोत दूर तक फैला हुआ है जैसे कोई नहर हो आगे खेत है इधर मिट्टी है।

यह एक ऑफिस हैं रेलवे प्लेटफॉम का जैसे--

और इसमें रेड कलर का कपड़ा है कुछ समान है।

रोड प्लेन है और इसमें ऑटो खड़ा हुआ--

इस फोटो में एक हॉस्पिटल के जैसे दिख रहा है जैसे--